एक सीट पड़ी है उस पर टटी की जाती है एक बेसन लगा है उस परे मूत रहे हैं।

नीले रंग की झील है हर तरफ हरियाली है समुंदर--

ये एक किताबों की दुकान हैं।